टेबल का कलर हरे रंग का कुछ टेबल का कलर ब्राउन रंग का दिखाया जा रहा है लाइटे जल चुकी है।